यह एक कक्षा का चित्र है।

यह एक क्लास का चित्र है।

ग्राउंड के अगल बगल कुछ रूम भी नजर आ रहे हैं और सामने में कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

बगल में एक टेबल भी रखा हुआ है जिस पर बहुत सारे सामान भी नजर आ रहे--

यह एक अस्पताल का चित्र है।

जिसमें बहुत सारे दरवाजे भी नजर आ रहे हैं।

इसमें बहुत सारे फ्रीज कूलर आयरन नजर आ रहे है।

टेबल पर एक पीले कलर का मेनू बुक भी रखा हुआ है सामने में दो इंसान भी नजर आ रहे हैं।

इसमें बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम चलता हुआ नजर आ रहा--

यहां पर ऊपर में बहुत सारे पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहुत सारा पानी नजर आ रहा है।

डेम के ऊपर एक ब्रिज है जिसके अगल बगल दो तीन पौधे भी नजर आ रहे हैं।

कुछ फूलदान भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक काले कलर की बाईक भी नजर आ रही है।

उसके बगल में कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

रोड के उस पार बड़े बड़े पेड़ और कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जो स्कॉर्पियो में कुछ काम कर रहे हैं।

स्कूल के अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।